दो आदमी उस प्रोडक्शन का ध्यान भी रख रहा है।

उसके सामने में एक बरा सा पेर परा हुआ --

इधर सब सब्जी की दुकान पड़ा हुआ है।

बाहर के आदमी भी आकर बहोत बहोत सब्जियां लेते हुए दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक कार वॉश दिखाया जा रहा है स्कॉर्पियो को ऊपर लट उठाए के।

अलग अलग रंगों के दिखाई दे रहा है।

साइड में दो घर बरा हुआ है।

तीन आदमी दिखाई दे रहा है और कुछ कपड़े सुखा रहे हैं वो लोग--

दो पोस्ट दिखाई दे रहा है। ऊपर में सजावट के साथ दो फैन भी दिखाई देता है।

मूर्ति की विकाफ का फोटो दिखाया गया--

यहां पे एक हार्डवेयर स्टोर दिखाया जा रहा है।

एक तरफ में एक फैन भी दिखाया जा रहा है।

यहां हमें एक बड़ा सा पत्थर दिखाया गया है।

और उसके नीचे में एक रेस्टोरेंट और दुकान भी खुला हुआ है।

इस घर के आगे में एक साइन बोर्ड है फ्रूट बीन्स लिखा हुआ है।